नमस्कार installation of celldesigner on linux os के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगें ubuntu linux operating system में celldesigner 43 को download एवं install करना
और celldesigner के draw area में compartment बनाना
यहाँ मैं ubuntu operating system 1404 celldesigner version 43 java version 17 का प्रयोग कर रही हूँ
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको linux operating system पर बुनियादी operations से परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित linux tutorials के लिए कृपया हमारी website www spokentutorial org पर जाएं
celldesigner install करने के लिए अपना web browser खोलें और दिखाए गए अनुसार url पर जाएँ
दायीं ओर मौजूद download celldesigner button पर click करें
एक नया web पेज खुलता है
नीचे scroll करें और download खोजें
यह download for linux 64 bit एवं download for linux 32 bit दिखाता है
अब देखते हैं कि अपनी machine के os type से संबंधित विवरण कैसे पता करते हैं
इसके लिए अपनी machine के ऊपरी दाएँ कोने पर स्थित system settings के icon पर click करें
क्लिक करने पर system settings पेज खुलता है
panel system में details icon पर double click करें
यहाँ details की नई window खुलती है अपनी machine का os type check करें कि यह 64bit है या 32bit है
मेरे पास 64 bit machine है अब हम window बंद करेंगें और वापस browser पर जाएँगें
यदि आपके पास 32 bit machine है तो 32 bit version download करें
मैं download for linux 64 bit link पर click करूँगी
तुरंत एक नयी window खुलती है
चूँकि मैं नयी यूजर हूँ तो मैं first time user विकल्प पर click करूँगी
और फिर continue पर click करूँगी
अब हमें कुछ व्यक्तिगत विवरण भरने को कहा जाता है
भरने के बाद download button पर click करें
एक dialog box खुलता है यहाँ save file button पर click करें
यह internet की speed के अनुसार कुछ समय लेगा
file downloaded होने के बाद ctrl + alt + t कीज़ एकसाथ दबाकर terminal पर जाएँ
मैंने पहले ही file को अपने default downloads folder में downloaded कर लिया है
तो सबसे पहले मैं उस folder पर जाऊँगी cd space downloads type करें और enter दबायें
ls type करें और enterदबाएँ
यहाँ वह file है जिसे हमने downloaded किया
यदि आपने 32 bit installer downloaded किया है तो file का name 64 के बजाए 32 होगा
यहाँ से terminal commands में अपनी 32 bit installer फ़ाइल के नाम का उपयोग करना याद रखें
अब हमें file permission बदलनी है तो type करें
sudo space chmod space 777 space hyphen capital r space celldesigner hyphen 43 hyphen linux hyphen x64 hyphen installer run
और enter दबाएँ
माँगे जाने पर admin password type करें और enter दबायें
अब हम dot forward slash celldesigner hyphen 43 hyphen linux hyphen x64 hyphen installer run टाइप करके फ़ाइल को now करेंगे और enter दबायें
setup wizard dialog box खुलता है
next button पर click करें
i accept the agreement विकल्प पर click करें और फिर next पर click करें
installation directory dialog उस directory को दिखाता है जहाँ celldesigner installed होगा
यह/home/<your username>/celldesigner43 की तरह दिखता है अब next पर click करें
यह ready to install प्रदर्शित करता है पुनः next पर click करें
installation शुरू होगा
पूरा होने पर view readme file को अनचेक करें और finish button पर click करें
अब ctrl + alt + t कीज़ दबाकर एक now terminal खोलें
ls type करें और enter दबायें
यहाँ हम runcelldesigner43 फ़ाइल देख सकते हैं
celldesigner खोलने के लिये हमें इस file को एक्जीक्यूट करना होगा
तो dot forward slash runcelldesigner43 type करें और enter दबायें
अब हमारी linux machine में celldesigner window खुल गई है
ध्यान दें कि हम main menu bar स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं इसे दृश्यमान बनाने के लिये main system settings को बदलना होगा
अपनी machine के ऊपरी दाएँ कोने पर स्थित system settings icon पर click करें
क्लिक करने पर system settings पेज खुलता है
personal panel में appearance पर double click करें
appearance named window खुलती है
look टैब में theme पर जाएँ
theme box में drop down menu से radiance चुनें और window बंद करें
ध्यान दें कि अब main menu bar स्पष्ट दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं
नया document खोलने के लिए file पर और फिर new पर click करें
वैकल्पिक रूप से menu bar में new icon पर click करें या ctrl + n कीज़ दबाएँ
new document नामक dialog box screen पर दिखता है जिसमें हमें फ़ाइल का name लिखना होता है
फाइल नाम में create and edit type करें
width को 900 और height को 800 पर set करें
नीचे ok button पर click करें
एक इनफार्मेशन box खुलता है
और हमारे द्वारा दिए गए name के सभी spaces underscore में बदल जाते हैं
इसलिये हमारी file का वास्तविक name create underscore and underscore edit होगा ok पर click करें और आगे बढ़े
centre के सफ़ेद भाग को हम draw area कहते हैं
हम आने वाले tutorials में menu bars toolbars एवं विभिन्न panels के bars में विस्तार से सीखेगें
toolbar से किसी any icon को चुनने से पहले select mode icon पर click करें
यह एक selection tool की तरह कार्य करता है इस selection tool से हम draw area पर components को select draw एवं move कर सकते हैं
एक component draw करने से पहले हम सुनिश्चित करेंगें कि celldesigner window में grid snap और grid visible सक्षम हों
इसके लिए main menu bar में edit पर click करें
नीचे scroll करें और grid snap पर click करें
फिर edit पर वापस जायें और grid visible पर click करें
grids हमें draw area में components को बेहतर अलाइन करने में सक्षम बनाते हैं
अब हम list एवं notes एरिया की स्थिति बदलते हैं
याद करें हम पिछले tutorial में list area notes area एवं draw area के बारे में पहले ही सीख चुके हैं
यदि आप नहीं जानते हैं तो इस शृंखला के पिछले tutorials देखें
आगे बढ़ें एवं list area का स्थान बदलें
view विकल्प पर जायें list पर click करें और right विकल्प चुनें
यह draw area में दायीं ओर list को बदलता है
बॉर्डर लाइनों को ड्रैग करके क्षेत्रों के आकार को बदला जा सकता है
मैं cursor को borderline पर रखूंगी
आप एक doubleheaded arrow देख सकते हैं draw area को बढ़ाने या घटाने के लिये इसे drag करें
अब हम draw area पर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगें
उससे पहले हमें celldesigner window पर सभी icons देखने में सक्षम होना चाहिये
इसके लिये main menu bar में view पर जायें
change toolbar visibleपर click करें और show all विकल्प चुनें
अब आप celldesigner window पर सभी icons देखने में सक्षम हैं आगे बढ़ते हैं
cell एवं intracellular compartment को प्रदर्शित करने के लिये हम toolbar से square icon का प्रयोग करेंगें तो पहले इस पर click करें
फिर draw area पर click करें बिना mouse button छोड़े square बनाने के लिये drag करें अब mouse button छोड़ें
खुलने वाले property of compartment dialog बॉक्स में name में cell निर्दिष्ट करें एवं size को 10 set करें और ok पर click करें
यह name compartment के नीचे दिखाई देता है
कोई भी compartment के name की स्थिति को भी बदल सकता है
ऐसा करने के लिये compartment का name चुनें जो हमारे case में cell है
अब इसे drag करें एवं वहाँ drop करें जहाँ आप इसे रखना चाहते हों
as file पर और फिर save as विकल्प पर क्लिक करके इस file को सेव करें
अब वह folder चुनें जहाँ आप अपनी file को सेव करना चाहते हों
मैं इसे desktop पर सेव करना चाहती हूँ
इसलिये मैं folder के रूप में desktop पर double click करूँगी जिसमें हमें so करना है
और फिर नीचे दाहिनी ओर ok button पर click करें
एक बार फिर नीचे दाहिनी ओर ok button पर click करें अब हमारी file सेव हो चुकी है
celldesigner को बंद करने के लिये file और फिर exit पर click करें
अब हम उस folder पर जाते हैं जहाँ हमने file so की है इसलिए मैं अपने desktop पर जाऊँगी यहाँ मेरी file है
ध्यान दें कि file xml format में सेव हुई है यह default celldesigner file format है
यह भी ध्यान रखें कि यह file केवल celldesigner में खोली जा सकती है
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा:
ubuntu linux os में celldesigner version 43 डाउनलोड एवं install करना celldesigner में एक compartment बनाना
निम्नलिखित link पर दिया गया video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial team कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा online test पास करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस mission से संबंधित अधिक जानकारी निम्नलिखित link पर उपलब्ध है
यह ट्यूटोरियल this अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद